तस्वीर में उम्म उम्म बहोत सारे लोग छत पे खड़े हैं अ जो कि अपना काम कर रहे हैं। एक आदमी बैठा हुआ एक आदमी झुका हुआ दो आदमी खड़े हैं।

इस तस्वीर में एक ट्रैक्टर दिख रहा है जोकि वाइट और ब्लू कलर का है और वो म अ एक लोडिंग लोड़िंग किया हुआ माल है जिसमें कि --

इस तस्वीर -- यह तस्वीर एक मेले की है जिसमें की बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी लाइटस वगैरह दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मई एक लड़की खड़ी है जोकि येलो कलर का कपडा और ब्लू कलर की चुन्नी लिए हुई है।

इस तस्वीर में एक आदमी खड़ा दिख रहा है। आ आ और वो व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पैंट पहना है और बैग लिए हुए है ब्लैक कलर का।

यहाँ पे बहुत इस तस्वीर में बहुत सारे लेडीज और जेंट्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

वो उस पेड़ को कलर कलर किया गया है ऑरेंज कलर से और पेड़ बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में बोहोत सारी मोटर बाइक खड़ी दिख रही है जो कि रेड कलर की है कोई ब्लैक कलर की है कोई ग्रे कलर की है और आसमान व्हाइट दिख रहा और --

इसके आगे एक मोटरबाइक खड़ी है बगल में एक और गेट लगा हुआ है जो कि घर का --

यह एक दुकान की तस्वीर है जिसमें काँच की सीसी आ काँच की गेट लगायी हुई है। दुकान के आगे एक आदमी-एक- औरत खड़ी है जोकि वाइट कलर का ड्रेस पहनी हुई है।

इस तस्वीर में तीन गाड़ियां दिखाई दे रही हैं एक वाइट कलर की और दो ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है। एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का।